दिए गए इमेज में एक जिम नजर आ रहा है जिसमे एक लड़का एक्सरसाइज करते हुऐ नजर आ रहा है जिसमे सफ़ेद रंग कि टीशर्ट और काले रंग की निकर पहेन रखी है।

खिडकियाॅं और दरवाजे हैं और छत भी सफ़ेद रंग की है और फर्श पक पक्की उसकी बनी हुई है सामने --

सफ़ेद रंग के हैं। उसमें कई तरह --

दिए गए इमेज में बहोत ही सुंदर आदमियों के स्टैचू बने हुए हैं। ये कई कलर के --

अम्म रंगों मे पेंट किये गए हैं। कोई ठोलक बजाता हुआ कोई डमरू कोई सितार बजाता हुआ। पीछे --

और लाल पडदे से सजा हुआ है। माइक लगे हुऐ हैं कैमरा ल कैमरा लगे हुऐ हैं लाइट लगे हुऐ हैं।

जो ये म बेचने के लिए रखी गई है एक आदमी है उसने चैकदार नीले रंग की शर्ट पहन रखी है सामने।

दिए गए इमेज में एक मैदान दिखाई दे रहा है जो कच्ची मिटटी की है। उसमें कहीं-कहीं जगह में हरी घास भी लगे हुए हैं। उसमें कई सारे लोग --

वॉक करते नजर आ रहे हैं। उसके सामने कई सारे बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक लड़के के बालों को कटिंग करने के लिए रेडी किया गया है। उसने एप्रॉन पर्पल कलर का पहना हुआ है दूसरा आदमी उसका फोटो ले रहा है।

सड़क के किनारे कई सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। सामने दो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं। कई मंजिल की हैं और शीशे लगे हुए हैं।

बेड में लेटे हुवे हैं। दोनों आदमी ने चेकदार शर्ट पहन रखी है। खिड़की ब्राउन कलर की है और दिवार हरे रंग की है। उसमें एक फ्लॉवर पॉट --